यहाँ पे एक दूल्हा दिखाई दे रहा है जिसने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी है और रेड कलर का पैजामा पहना हुआ है और इसके सामने एक लड़का है जिस--

यहाँ पे एक सैलून दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक आदमी बाल काटने आया है ये नाई इसको बाल काट इसके बाल काट रहा है।

यहाँ पर मुझे एक नदी दिखाई दे रही है जिसके साइड में दोनों ऑपोजिट साइड में और बड़े-बड़े पत्थर से पहाड़ बना हुआ है।

तो अफसोस की बात ये है कि लोगों ने इसपे साइड में कचरा फेंका हुआ है इसके साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और इस पार्क पे एक आदमी भी चल रहा है।

पैसेंजर्स सैर कर रहे है और इस समंदर के पीछे बहोत ज्यादा ग्रीनरी नजर आ--

ओर ये घर सिंमट से बना हुआ है और ये घर का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक समंदर दिखाई दे रहा है जिसमें दो बोट भी दिखाई दे रहें हैं जो वाइट ब्लू एंड येलो कलर से पैंट किया हुआ हैं।